यह एक मॉल है यहां पर--

और यहां पर कई पेड़ लगी हुए है वो पेड़ काफी अच्छे लगे हुए हैं और हम --

और दो जाने यहां पर आए हुए हैं एक जना नीचे खड़ा है और एक जना मोबाइल से अपनी फोटो ले रहा है।

पेड़ वगैरा अशोक के पेड़ के प पेड़ लगे हुए हैं काफी अच्छी व्यवस्था--

नाव चल रही है और काफी इधर की साइड --

यहां पर गेट पर एक आदमी बाहर खड़ा है।

और बाहर की साइड भी लोग खड़े हुए हैं बाहर टेबलें लगी हुई हैं।

ये बैस का बाड़ा है यहां पर दो बैसे खड़ी हैं एक बड़ी भैंस खड़ी एक छोटी रस्सी से बंधी हुई है नीचे --

ये ओणम की कोई झाकी निकल रही है।

यहां पे पास में कोई दुकान वगैरा भी है।

यहां फल और सब्जी मंडी लगी हुई है यहां काफी भीड़ है कई लोग सब्जियां ले रहे हैं कई लोग फल ले रहे हैं।

यहां एक गर है गर के पास में कोई बेकरी की दुकान है यहां पर दुकान पे काफी कोल्ड ड्रिंक्स है।

आगे घोड़ो से जाकी सजाई है फूल लगाये हैं केले के पत्तों से सजाया गया है।

और उ उन उं वहां पे स्टेज पे जो सजाया गया वहां गणेश प्रतिमा की प्रतिमा रखी गई है।

और लोहे के वो शरीर को बांध रहे हैं हैं।

कुर्सियां रखी गई हैं और डी_जे रखा गया है।

ये काफी अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है यहां पे काफी सुंदर चेयर लगी हुई है कांच के गेट्स --